यह एक जंगल है जिस मे एक पगडण्डी बनी हुई-- एक व्यक्ति अपने हाथों मे फूल लिए फोटो कैप्चर कर रहा-- जंगल मे बहुत सारी झाड़ियां घास व पेड़ पौधे--

यह एक यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया है। जिसके निचे एक ग्राउंड फ्लोर बना हुआ है।

जिस पर ओम का सिंबल बना हुआ बैंक के सामने एक बाइक पार्क--

साइड में एक एटीएम है। जहां तीन व्यक्ति अंदर की ओर जा रहे हैं। बैंक के कोने पर एक व्यक्ति वीडियो पर बैठा है।